सैलून का नाम है इस सैलून के बाहर एक व्यक्ति जीन्स और --

बड़े-बड़े लाल रंग के चुकंदर दिखाई दे रहे हैं। .

मास्क लगाने पे हमारा चेहरा का स्किन जो है बिलकुल साफ़ हो जाता है।

यह फोटो किसी म्यूजियम की है जहाँ --

करता हुआ नजर आ रहा है और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है।

पीछे बोर्ड लगाया गया है आलब उत्सव।

अक्सर बच्चे समर वेकेशन में वॉटर में खेलने के लिए जाते हैं।